और बतख भी बोहोत अच्छे तरह से यहाँ रह जाते --

कुछ पैसा आ जाए और ग्राहकों को भी सोचते कि अ --

डॉक्टर प्रदीप सिंह के द्वारा यहाँ पर हॉस्पिटल में --

यहाँ पर सारे बहुत खू --

यह जो मंदिर है ब हमारे एरिया में --

मंदिर बहुत फेमस है और यह अच्छे जगह है।

साथ ही मे डिजिटल पे भी है देखिये फोन पे लगा हुआ है यहाँ पे --